और यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षक भी उपस्थित --

यह एक मंदिर है यह मंदिर में रोजाना आदमी पूजा करने के लिए आते हैं ।

बहुत अच्छा पार्क है।

जैसे रसगुल्ला रसमलाई और भी रसगुल्ले यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ बहुत स्वादिष्ट --

यह एक पार्क है यह पार्क में बहुत आदमी घूमने टहलने के लिए शाम को आते हैं ।